यह तस्वीर एक रूम का है जिसका रंग सफेद है।

और इसमें कुछ चटनी और सफेद में मेयोनेज़ लगाई हुई है।

इसका बगल में कुछ पौधा लगल है और कुछ मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है।

इसके आसपास बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट का बाहर का है जहां पे लिखा हुआ है करीम।

वहा कॉउंटर भी बना है जिसके पास दो फ्रेम रखा हुआ है दोनों माला पहना हुआ है।

यह तस्वीर एक फॉल का पास का है जहां पे पत्थर से पानी गिर रहा है।

तस्वीर एक नौवे का दुकान का है जिसका रंग हरा है।

पीछे आदमी बाल काट रहा है दोनों दीवार पर आईना लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक मकान है जो कि सफेद रंग का है और इसका किनारे किनारे का रंग गुलाबी रंग का है।

नीचे बहुत सारा बाइक और स्कूटी रखा हुआ है।

यहां पे एक फ्रिज भी रखा हुआ है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक लस्सी स्प्राइट रखा हुआ है।

यह तस्वीर एक पार्क का है जहां पे एक स्टेचू बना हुआ है जो की गोल्डन रंग का है।

यहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने सफेद रंग का रुमाल सर पे बाधा हुआ है और उसने काले रंग का जूता पहना हुआ है।

सोपीस भी रखे हुए हैं।

नीचे बहुत सारा जानिवाज बिछा हुआ हैं।

यहां पे कुछ डब्बा रखा हुआ है और साइड में अंडा का ट्रे रखा हुआ है।